दाई ओर एक कार्पेट बिछाया गया है जिसपे काफी सारी कुर्सियां लगाई गई हैं यहां पर रेलिंग दिखाई दे रही हैं रेलिंग के पास कुछ फूल से पेंटिंग भी की हुई है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का दृश्य है यहां पर काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए हैं।

यहां पर कुछ फ्रिज रखे हुए हैं कुछ कूलर रखे हुए है कुछ सैमसंग के फोन्स रखे हुए है।

यहां पर अंदर भी कुछ आदमी बैठे हुए हैं यहां पर एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ तारे भी लटकी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर काफी सारे रैक लगाए गए हैं रैक में काफी सारे अलग अलग प्रकार की बुक रखे हुए हैं यहां पर काफी सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यह कमरे का दृश्य है कमरे में काफी सारे पिंजरे रखे हुए हैं यहां पर सामने पिंजरे में दो पॉपी दिख रहे हैं।